यहाँ पर हम एक रूम नजर आ रहा है जां की वॉल पर हमें एक क्रॉस दिख रहा है और यहाँ पर हमें दो फोटो भी नजार आ रहे है और यहाँ पर एक छोटा काउन्टर दिख रहा है जो कि ऑरेंज और ब्लू दिख रहा है।